एक आदमी खड़ा है जिसमें सफेद बनियान पहनी हुई है और ऊपर पीले कलर की सर पर टोलिया भी बांधी हुई है भाई इसने--